स्टेडियम है जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आदमी बैडमिंटन खेल रहा है और यहाँ पर प्रैक्टिस भी होता है मैच भी होता है। लोग यहाँ पर और कॉम्पीटीटर लेते हैं एक दूसरे से मैच और खेलकर जो जीतता है उससे प्राइज भी दिया जाता है ताकि वो आगे बोहत अच्छा करे।

ये एक एक जनरल स्टोर है जहाँ पर कि गिफ्ट का आइटम है।